इस मार्केट में बहुत सारे लोग भी हैं।

इस घर का कलर सफेद है।

इस छोटे बोर्ड में श्रीराम इलेक्ट्रीस एंड गैस उत्पारक सेंटर लिखा हुआ है।

मस्जिद के छत में बहुत सारे पंखे लगे हुए हैं।

यहां पर दो लोग उधर ही जा रहे हैं।

इस दुकान के सामने एक रोड भी दिख रहा है।

रूम के सामने एक कुर्सी भी रखा हुआ है।

रूम के दीवार में कुछ सामान टांगे गए हैं।

इनके पीछे ब्लू कलर का पर्दा दिख रहा है।

इसके सामने एक लाइन वाला ट्रांसफर भी दिख रहा है।

इन सभी औरतों के साड़ी का कलर लाल हरा ब्लू और बैंगनी है।

पीछे बहोत ही बड़ा तस्वीर लगाया गया--

इस गाड़ी का कलर सफेद है।

कुर्सी के सामने एक काउंटर लगाया हुआ है और काउंटर का कलर ब्लू है।

जिसमें बहुत सारे बांस दिख रहे हैं।

इस नहर के आसपास में हरे भरे पेड़ भी दिख रहे हैं।

जो कि नहर के सामने एक पूल बनाया गया है।

और इस रूम का कलर सफेद दिख रहा है।

इस रूम में अल्ट्राटेक का भी सीमेंट रखा हुआ--

यह एक सीमेंट दुकान है।

दुकान के अंदर बहुत सारे छड़ है।

दुकान के सामने एक कुर्सी लगा हुआ है।

जिसमें बिरला गोल्ड लिखा हुआ--

इसमें हरे भरे बहुत सारे पेड़ हैं।

साइड में एक कुर्सी भी रखी हुई है इस कुर्सी का रंग लाल दिख रहा--

इसके नीचे कुछ लाइट भी लगाया गया है।

उसके सामने कुछ पेड़ भी दिख रहे हैं।

इसके आस पास में बड़े बड़े घर भी दिख रहे हैं।

यहां पर तीन पटरियां बिछी हुई है।

यहां पर बहुत सारे गड्ढे दिख रहे हैं।

रूम के साइड में छोटे खिड़की भी लग रहे हैं।

इस घर के अंदर यहां पर एक ट्यूशन क्लासेस दिख रहा--

रूम के सामने एक और घर दिख रहा है उस घर का दरवाजा लाल कलर का है।

इमारत का कलर हल्का गुलाबी है।

इसमें बहोत सारे ब्लैक ब्लैक खिड़कियां दिख रही हैं।

इमारत में एक बोर्ड भी लगाया गया है।

इस बोर्ड पर आई एस ओ एन लिखा हुआ है।

यहां पर एक नदी दिख रही है।

यहां पर बहुत सारे लंबे लंबे और हरे भरे पेड़ दिख रहा है।

यहाँ एक फुटबॉल ग्राउंड दिख रहा है।

ग्राउंड के पीछे बड़ा बड़ा घर दिख रहा है।

दुकान के छत में पीला और सफेद कलर का पेंट किया गया है।

हां एक शादी का टेंट लगाया गया है।

इस मैट का कलर ऑरेंज ग्रीन और येलो है।

ट्रेन के पटरी पे कुछ गाड़ियां दिख रही है।